और यह घर काफी जल्दी में बन जाएगा।

ये मंदिर है काफी ज्यादा अच्छा से बनाया है।

और ये बहुत ही अच्छा हैं।

जो की काफी ज्यादा अच्छे हैं।

और यहाँ पर अपना बच्चे सब और बड़े लोग भी आते हैं ख़रीदते हैं।

और खाते हैं और ये बहुत ही अच्छा बना हुआ रहता है।